यहां पर बहुत बड़ी लंबे लंबे गहरे गड्ढे बने हुए हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ है।

और यहां पर बहुत सारी हिरण है जो उन घासो को खा रही है और इन हिरनों का रंग पीला हल्का सा लाल भी है वही आसमान भी दिखाई दे रहा है।

वहीं पर बहुत सारी बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी इमारतें भी बनी हुई हैजिनका रंग सफेद और पीला है वहीं पर बहुत लंबी-लंबी बड़ी-बड़ी पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं जिनका रंग हरा है।

जिन्होंने ला सफेद और काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी है और उन्होंने एक हेलमेट भी लगा रखा हुआ है जो काले और नीले रंग का दिखाई दे रहा है वहीं दूर दूर बड़ी इमारतें दिखाई दे रही हैं।

यहां पर यह बड़ा सा मैदान है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है मानो जैसे एक नदी हो और उसमें एक बस भी है जिसके टायर पूरे डूब रहे हैं।